यह एक जिओ का ऑफिस है इसमें एक अंदर एक बड़ी मल्टी बनी हुई है।

यह एक ऑफिस है जिसमें श्याम बाबा की मूर्ति लगी हुई है।

कार की मरम्मत हो रही है एक लाल रंग की चीज के द्वारा और इसमें।

पानी की सप्लाय करने वाली मशीन रखी गई है।

खड़े जा रहे और चढ़ाव पे जाते हुए दिखाई दे रहे--

तीन फैन दिखाई दे रहे हैं और एक कुलर भी कोने में पड़ा हुआ--

मूर्ति ले ले आई ले जा रही है वहां कई सारे लो--

मरोमत हो रही है और टाइल्स भी लगाइ जा रही है।

चढ़ाव भी रखी हुई है और एक--

कार रखी गई है रिमोट वाली। जहां बच्चे बैठ के गाड़ी चला सकते हैं और--

यह एक जगह है जहां कई सारे व्यक्ति बैठे हैं।

लग रहा है यह एक दरगा में बैठे हैं जहां--